शीशे पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है और बाकी सफेद रंग.

है और यहां से ग्रिल भी लगा के हैं.

ये गाड़ियों के मैकेनिक हैं ये गाड़ियां ठीक कार रहें हैं और--

गाड़ियों को सारे सामान खोल के हे--

ये मंदिर है यहां पे ये सारे भक्त आए हैं.

वहां पे गेट खुला है और गाड़ी भी सामने है.

आगे टूल भी खड़ा है ओर--

जैसा कुछ लग रहा है इसमें पांच छह.

पांचों छह शेल्फों में बराबर सामान हैं.

सामने ग्रिल लगा के हैं और नीचे टाइल्स बिछा के हैं।

इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है डायपर्स है और कुछ यहां से भी.

यह होलसेल की दुकान है इसमें बहुत सारे डिब्बे बरके हैं.

इसको चार जूते लगा के हैं दो पांव में है और दो हाथों में।

इसमें बहोत सारे लड़के हैं और एक लड़--

सर्विस स्टेशन है जहां पे इन्होंने लिखा है हम साठ मिनट में.

ज क्विक अपना काम करते हैं अपनी सर्विस देते हैं यहां पे एक पेड़ भी लगा के हैं.

इर्द गिर्द थोड़े से पौधे लगा के हैं।

खड़ी है कुछ कुर्सी पे बैठी है और--

यहां पे ये मार्बल बेच रहे हैं.

नाव पे ये लड़की खड़ी है और ये वापस अपने घर की तरफ जा रही है.

चारो तरफ पेड़ लगा के है।

जार भी लगा के हैं और अलमारियां भी लगा के हैं.

अ और कुछ ईंटें भी हैं मार्बल जैसी।

और वहां पे एक लैपटॉप और एक केबिन और एक दरवाजा है।

वहां पे ये किताबों की दुकान.

वहां पे बहोत बड़ा खुला मैदान है।

यहां पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगा के है.

और एक पास चलने के लिए है.

यहां पे ये विवो का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है.

यहां पे बहोत सारी सीढ़ियां है और एक--

छोटी भी बाइक भी खड़ी है और बहुत बड़ा खुला मैदान.

यहां पे बिस्तर बिछा के हैं दो ताकिये दो कमले और एक वार्डरोब है और बे--

आरसीएफ हुसैनपुरा में है इसमें बहुत बड़ा गेट लगा के हैं.

यहां पे दो मकान बनाके है और सीडुं के नीचे एक औरत बैठी हुई--

एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है.

ऑफिस में सारे लोग काम कर रहे हैं.

ने अपने कैबिन में सारे बैठ गए हैं.

और सीमेंट नीचे से सीमेंट और ऊपर से कुछ डेकोरेशन कार के हैं.

यह स्टैचू है इस पे येलो कलर का फराक ल.

लगा के हैं और ये कपड़ों की दुकान है।